नए तथा रिपेयरिंग भी की जाती है।

इस वर्क और शॉप का नाम वीवो मोबाइल वर्कशॉप है।

तथा काफी बड़े बड़े पेड़ भी हैं जो काफी हरे भरे हैं।

यह किसी बड़े तालाब का फोटो है जिसमें दो गाय खड़ी हुई हैं।

तथा मच्छियों से काफी बदबू आ रही है।

तथा इस चिस लेंटर पर काफी व्यक्ति काम कर रहें हैं।

जो काफी बड़ा ग्राउंड है यहाँ रात पीला के इस ग्राउंड के अस पास काफी --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

यहां फोटो एक बड़े से कमरे का है जो काफी सुंदर लग रहा--

मुझे इस फोटो में एक ऊंची बिल्डिंग दिख--

मूर्तियां रखी हुई है जो कुछ पीतल और चांदी तथा अन्य मेटल की बनी हुई है।

यह दुकान किड्स खिलौनों की है जो काफी बड़ी है इसमें--

किसी सोसाइटी के पास का है तथा यह फोटो नाइट के समय का लिया गया है।

तब ब्रिज के नीचे से काफी बड़ी नदी बह रही है।

यह फोटो एक बड़े से हॉल का है।

इस फोटो में एक ग्राउंड के लिए जाता हुआ एक गेट दिख रहा है जो काफी बड़ा है।

जिसमें काफी भीड़ दिखाई दे रही है तथा ट्रैक्टर द्वारा कोई झांकी निकाली जा रहे हैं इसमें काफी भीड़ है।

किस सफेद कलर के टी शर्ट पहने हुए हैं।

जुड़े हैं इस संघ की द्वारा शायद ही स्टोर किया जाता है।